आसपास पांच से छह डॉक्टर खड़े हैं जोकि हरे कलर का कपड़ा पहने हुए हैं और मुंह में मास्क लगाए गए हुए हैं।

उसके नीचे एक चार्जिंग प्लग दे रखा गया है और एक कैची भी रखी गई है।

और उसके नीचे जाली जैसा तीन चार खिड़की भी बनाया गया है।

यह पिक्चर एक स्कूल का है जहां पे क्राफ्ट कंपटीशन चल रहा है सामने बहुत सारे ब्लू कलर बेंच लगाए गए हैं जहां पर बच्चे अपना क्राफ्ट बना रहे हैं।

और बहुत सारे बेंच भी रखे गए हैं जहां पर तीन से चार आदमी और औरतें भी बैठी हुई है।

इस पिक्चर में एक छोटा सा दवाई का दुकान दिख रहा है इस दुकान का कलर सफेद है और छत पर से लाइट भी लगाई गई है।

शेल्फ के ऊपर भी बहुत सारी दवाइयाँ और पैड्स रखा गया है।

इस पिक्चर में एक बहुत बड़ा माइनिंग दिख रहा है जिसके आसपास बहुत सारे पेड़ और पहाड़ दिख रहे हैं और बहुत सारे पौधे भी दिख रहे हैं।

जोकि इस गाड़ी को रिपेयर कर रहा है इस गाड़ी में बहुत सारे इंजन का पार्ट भी दिख रहे हैं।

यह पिक्चर एक बहुत बड़ा मार्केट है मार्केट में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है जहाँ पर कपड़े बिक रहे हैं।

इस बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे एडवरटीज्मेंट की गई है और एक भी टू का बोर्ड लगाया गया है।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

सामने एक सफेद कलर का बेड भी लगाया गया है और दीवार पर एक टी_वी भी लगा हुआ है।

इस पिक्चर में एक हरा कलर का बस दिख रहा है इस बस में चार टायर लगाए गए हैं।

बहुत सारे वाइट कलर के फेंस लग लगे गए हैं।

थत पर एक टंकी भी रखी गई है रोड पर बहुत सारे लोग खड़े है और एक ट्रैक्टर के सामने पुलिस भी है।

और सामने एक स्लैब रखा गया है इस स्लैब में एक वाइट कर की भगवान जी की मूर्ति भी रखी गई है।

इस दुकान में बहुत सारे चेयर और बहुत सारे कुर्सी भी रखे गए हैं।

और बहुत सारे बैलून से इस बिल्डिंग को डेकोरेट किया गया है। आसपास बहुत सारे चेयर भी रखे हुए हैं जिनमें बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

रोड के किनारे दो से तीन दुकानें हैं जिनके नीचे बहुत सारे स्कूटी और बाइक पार्क है।